यह एक इस स्मार्ट वर्ल्ड की दुकान है। यह दुकान अभी बंद है। इस दुकान के बहार --

यह एक भीड़ वाली जगह है इस जगह में बहुत भीड़ है और यहाँ सब लोग मिल कर डांस कर रहे हैं।

इस जगह पर बहुत सारी बाल्टियाँ रखी हुई हैं और उन बाल्टियों में कुछ न कुछ समान रखा हुआ है।

इस सड़क के बगल में दो पेड़ भी लगे हुए है इन घरो में बहुत सारे लोग भी रहते है।